मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक वाइट कलर का प्लेट के ऊपर--

पराठे दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे में एक स्टील का बाउल दिखाई दे रहा है।

जिसके चारों ओर पेड़ सब है।

डोसा दिखाई दे रहा है।

फैन दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा मिरर दिखाई दे रहा है स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है।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

रोड दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारे कार्टून भी दिखाई दे रहा है।